यहाँ पे एक धार्मिक कार्यक्रम किया या जा रहा हैं जिसकी यहाँ पे तैयारा शुरू हो रही हैं।

एण्ड यहां पे कुछ बलून भि लटके हुए दिख रहे है एण्ड यहा पर कुछ आदमी भि खड़े हुए है एवम कुछ आदमी बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है।

एंड इसमे रेड कलर की अवम रेड कलर की फुल दिखाई दे रहा है यहा पर निचे टाइलस दिख रहा है।

ये जो तोते है इनका कलर ग्रीन है एंड यंहा पिंजरे में एक प्लेट भी रखी हुई दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे जो पिंजरा है उसमे लोहे की जाली लगी हुई दिख रही है।

यहां पर दो चार्ट की दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है और यहां पर छ कुर्सियां भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं एक बाइक भी यहां पर खड़ी हुई दिख रही हैं।